गाड़ियां दिख रही है रोड पे भी दिख रहा है बहुत सारी कलर सजावट दिख रही है मरकरी वगैरा --

एक लड़का खड़ा हुआ दिख रहा है दुर्गे जी की मूर्ति दिख रही हैं मालाएँ दिख रही हैं फूल दिख रहे हैं और आम के पत्ते दिख रहे हैं नाम लिखा हुआ दिख रहा है ज --

बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है पेड़-पौधे दिख रहे है बाउन्ड्री उठी दिख रही व्हाइट कलर की।

यह ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए दिख रहे है उसकी फैस पे कलर दिख रहा है और भी बैठे हुए दिख रहे है जेन --

आलू रखे दिख रहे है क्रेड में पीला कलर दिख रहा है ब्लैक कलर दिख रहा है छिलके लगे हुए दिख रहे --

बालकनी दिख रही है बिल्डिंग पेड़-पौधे ग्राउंड दिख रहा लकड़ी पड़ी हुई दिख रही है ऑरेंज कलर ब्लैक कलर पिंक कलर --

बॉक्स रखे हुए दिख रहे हैं स्टार बना हुआ दिख रहा है एक जेंट्स खड़ा हुआ दिख रहा है वहाँ पर चेयर दिख रही है ब्लैक कलर --